बिल्डिंग का काम चल रहा है।

बिल्डिंग है जो वाइट कलर की है और उसपे ब्लू कलर का पैटर्न किया गया है और सामने बहोत सुंदर डेकोरेशन भी किया गया है।

इधर पे परेड के लिए गाड़ी भी है एम्बुलेंस भी है और इंसान भी।